सोफा का दुकान देख सकते है जो काफी बड़ा--

ट्रैक्टर और कार देख सकते हैं।

आप यहां इस पिक्चर में देख सकते हैं की यहां